एक गेंदे के फूलों की है एक कमल के फूलों की है। काफी अच्छी-अच्छी मालायें हैं। काफी खुशबूदार हैं।

देखो ये कितनी बड़ी-बड़ी --

काफी बड़ी बनी हुई है।

पर्दे गिरे हुए हैं। बोहोत ही बढ़िया बेहतरीन पर्दे लग रहे हैं। रंग बिरंगे --

बहुत ही बढ़िया कुर्सी भी गिरी हुई ह्म्म

यहाँ पर जंगल में एक झोपड़ी-सी बनी हुई है। जिसमें शेर बैठा हुआ है।

देखो काफी सारी बसें खड़ी हैं। एक डी.सी.एम. भी खड़ी है। बस जो होती है काफी बड़ी बस है।

शाम के समय जिम करने के लिए आते हैं। बोहोत ही बढ़िया है।